और इसमें क्रिकेट भी खेलते हैं और सारी चीजें इसमें खेल-कूद आदि सब होते हैं और पढाई भी होते हैं इसमें धन्यवाद।

इसमें ढ़ेर सारे लोग आते हैं और अपना-अपना वस्त्र जो है किन के जाते हैं।

टमाटर आदि सारे चीजें यहाँ पर हैं।

यह एक पॉपुलर जे.सी.बी है और यहाँ पर खुदाई कर रहे हे और एक ठो मुंसी और दो ठो आदमी और एक ठो लेबर --

यह बहुत बढ़िया गैराज है ओ --